की आप देख सकते है यहा पर लकड़ी से बना हुआ बहुत प्यारा सोफा रखा हुआ है इस सोफे के पीछे हरी घास लगी हुई है जिसमे की दो छोटे-छोटे पौधे लगे हुए है।

इनमे कुछ फ्लावर पॉट है कुछ टोकनी है कुछ मूढ़ी भी रखे हुए है पीछे की तरफ एक बेम्बू से बनी हुई कुर्सी राखी हुई है और सामने कुछ हरियाली भी दिखाई दे रही हे--

और इस तालाब के सामने की तरफ बहुत जादा पेड़ पौधे और हरा मैदान दिखाई दे रहा है |

जैसा की आप देख सकते है यहाँ पर एक लकड़ी की टेबल पर बहुत सारी मछलिया मरी पडी हुई है इनमे से ज्यादा तर मछलिया कटी हुई भी है।

जैसा की आप देख सकते है यहा पर एक बस खड़ी हुई है और सामने ग्राउड मे एक आदमी बैग टांग के खड़ा हुआ है।

और यहा पर एक सड़क पर आदमी जाता हुआ दिखाई दे रहा है और सड़क के दोन्हों तरफ ये बहुत हरियाली है और पेड़ पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे है।